जो कि एक और ब्रेड या फिर के लिए है।

जैसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं ये एक रास्ते का फोटो है।

इस काउंटर में एक रेड और पिंक कलर का नियॉन लाइट्स भी लगाया गया है।

यहां पे एक यहां पर कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है।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

जिसमें एक आगे एक ड्राइवर के बैठने की शीट है और पीछे कोई मशीन रखी गई है।

जिसके अंदर हम देख सकते हैं में एक चर्च है।

ऊपर एक घर है और नीचे एक किराने का दुकान है जिसमें काफी सारी चीजें हैं।

इसमें बहुत सारी किताबें हैं और पेन पेंसिल बहुत कुछ है।

जिसने ब्लू कलर का शर्ट पहना है और दुकान के काउंटर में एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

इन इनमें सिर्फ दो महिलाएं हैं और बाकी सारे लड़के हैं।

और यह एक कपड़े की दुकान है।

जहां एक साइड डीजल लिखा हुआ है और दूसरे साइड पेट्रोल ।

जिसमें एक बेड है जिसमें दो पिलो और एक ब्लैंकेट भी है।